ये एक झूला है स्विमिंग पूल वाला और पीछे बड़ा वाला गोल वाला झूला है।

और नीचे दो तीन बोर्ड भी लगे हुए हैं और नीचे अलग कलर के डिजाईन के जीने भी --

श्री राम का बोर्ड लगा हुआ है। बी.टेक करने के लिए बी.कॉम करने के लिए।

यहाँ पे सामने बिल्डिंग बनी हुई है। गाडी है। फोर व्हीलर है। बस हैं। बोहोत सारे पेड़ हैं।

इसमें एक लड़का है। एक लकड़ी है। एक दरवाजा है पिंक कलर का। पर्दा लगा हुआ है और एक वाइट कलर का --

और यहाँ जाने की रोड भी बनी हुई है। पीले और काले कलर के --

और पेड़ वेड़ भी बोहोत सारे हैं इसमें।